गमले भी अच्छे लाल हरे कलर के लगाए हैं लाइट अच्छी लग रही है और हरा-भरा गार्डन भी दिख रहा है।

ये एक लाइब्रेरी का सीन दिख रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है की पंद्रह अगस्त का सीन है या छब्बीस जनवरी का जिसमें बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं।

ये एक सुमन ग्लाम होटल और बुटिक है। जिसमे और रहा जा सकता है। आप कहीं जा रहे हैं रुकना चाहे होटल में रुक सकते हैं।

ये भी एक होटल लग रहा है। शादी के लिए किसी ने बुक काराया होगा। सजावट तो बहुत अच्छी है लाईटे अच्छी लगा रखी है। सामने दो हाथी खड़े हुए हैं। अन्दर रिसेप्शन नीला हरा पीला लाइट जल रही है।

दूर वहाँ एक स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है ऑफिस दिख रहा है।

फेमस एयर्स एंड ड्राईक्लीनिंग की दुकान है रफू भी होता है। यहाँ पर आदमी अंदर बैठे हुए हैं बोहोत सारे कपड़े भी दिख रहे हैं कोई जिसको ड्राई क्लीनिंग करवाना वो यहाँ से करवा --

वो कोई किसी का वेयरहाउस लग रहा है जिसमे आगे सिलेंडर रखा हुआ है बड़ा सा गेट भी है ।

ये भारत कोचिंग अकादमी है जिसमें एग्जाम की तैयारी की जाती है करवाई जाती है काफी लोग अंदर होंगे अभी लगता है नया-नया ही खुला हुआ है और इसमें आगे गाड़ियां हैं।

कोई लाइब्रेरी ही है जिसमें लड़कियां पढ़ रही हैं उनकी किताबे रखी हुई हैं। आसपास बेग रखे हैं चार्जिंग पॉइंट भी है और क टिफिन बिफिन भी लेकर आए हैं।

ये तो फल वाले का ठेला लग रहा है। जिसमें खरबूजा केला और पपीता रखे हुए है। चार पपीते है।